इधर सब्जी मंडी दिखाई दे रही है जिसमें एक मिर्ची दिखाई दे रही है एक बोरी में एक बोरी में रेड कलर की मिर्ची है एक बोरी में पत्तागोभी हैं आलू है।

इधर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। इसमें एक दो मूर्ति दिखाई दे रही हैं जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा ये मंदिर इधर एक लड़का दिखाई दे रहा जो कि बैठा हुआ है अ ग्रीन कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इधर दो तीन घर दिखाई दे रहें हैं उसके बाजू में ग्रीन ग्रीन कलर के घांस दिखाई दे रही है घर का रंग वाइट है एक ग्रीन कलर का घर है।

और इधर एक तार फैंसिंग में लगी हुई है जिसमे और भी पाइप भी लगे--